काली कलर की स्कूटी भी हम देख पा रहे हैं और मंदिर की रेलिंग पर --

बहुत सारे भगवानो के मूर्ति भी दिखाई जा रही है। माता जी शिव जी गणेश जी --

बारबर से माल भी कटवाए कटवा रहा है और उसके सामने एक कपड़े भी --

यहां पर चार तरह के मिठाई और सात तरह के नमकीन के दिख पा रहे हैं और यहां पर एक काउंटर के अंदर हमे यह --

और यहां पर हमें बहुत सारे पंखे भी लगाये हुए दिखे जा रहे हैं और यहां पर दो बंबू से टिके हुए बहुत --

बहुत सारी साड़ी भी हमें यहाँ पर हमें डमी भी दिखाई जा रहा है।